मुझे फोटो में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक मोबाइल दिखाई दे रहा है।

एक दुकान दिखाई दे रही है।

बहोत सारी सजावटे दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे इस फोटो में पर्स दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे फोटो में एक इमारत दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में पेड़ दिख रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो में बादल दिखाई दे--

मुझे इस फोटो में फेस वॉश दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक पार्किंग दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में कुछ रेड दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो मे पोस्टर दिख रहें है--